बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी कॉपी दिखाई दे रही है ग्रीन ब्लू ब्लैक रेड येलो कलर की पेन भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर दो मगरमछ दिखाई दे रहा है पोंड दिखाई दे रहा है जिसमें पानी दिखाई दे रहा है बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

डोनट जैसे आकार के बैलून दिखाई दे रहें हैं पानी में तैरने वाले।

लाइट्स दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की बल्ब्स दिखाई दे रही है ग्रीन हरा सफ़ेद काला लाल सिंदूरी कलर दिखाई दे रहा है।

डंबल व हाथ के मसल्स की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।